कोई पैलेस दिखाई दे रहा है।

और हमें मूर्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

इसमें छोटे छोटे बच्चों के खिलौने--

अह खिड़कियां पर पर्दे भी टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छी नर्सरी लग रही है।

ये तो कार देखने में बड़ी लग रही हैं।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे घर दिखाई दे रही हैं।

इन्होंने ये सजावट के लिए यूज किए गए हैं।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहें हैं।

ये सब अपना अपना काम करने में व्यस्त हैं।

सब अपने अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें नर्सरी की दृश्य दिखाई दे रही है।

जिसमें बहुत सारी गंदगी लगी हुई--